यहाँ पर एक जिम है और जिम मे बहोत सारी एक्सर्साइजेस आ मशीने रखी हुई है आ फिटनेस एक्सर्साइजेस मशीने रख --

यहां पर एक फाउंटेन फेन है जो कि बोहोत अअअ हाड से अअअ फुब्बारा एक शॉवर की तरह पानी गिरता है।

और साइड में अ बोहोत सारी पथरीली एरिया हैं पत्थर की चट्टानें हैं अ साइड में छोटा सा एक मंदिर है।

यहां पर कुछ पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। किले टाइप के बने हुए हैं। आ जो कि आ किला बना हुआ है।

यहां पर एक जिम है और इनके ममम जिम है और जीम की दीवालों पे ये बाहर ममम कुछ होल्डिंग पोस्टर वगैरह लगे हुएँ है।

इसमें एक हेलमेट लगा हुआ है और ब बाइक जो है ब्लैक कलर की है और साइड में अ क्लिनिक के साइड के दिवाल (दीवार) पर कुछ अ एक पेंटिंग की गई है।

यहाँ पर एक चद्दर की लोहे की चद्दर का शेड डला हुआ है और शेड के नीचे एक बासों के द्वारा बनाई गयी एक दीवार खड़ी करी गयी है जोकि लकड़ी के बांस के द्वारा बनाई गई है।

यहाँ पर आहा बोहोत सारे खेत मतलब पेड़ पौधे लगे हुए हैं। खेत है यहाँ पर जिसमें बोहोत सारे पेड़ लगे हुए छोटे-छोटे से प्लांट लगे हुए हैं।

यहाँ पर एक मंदिर है और जो म- का गेट है जो कि लोहे के उसे बनाया गया है अ- बाउंड्री है और जिसमें सर्किल राउंड शेप में कुछ लोहे की रोड वगैरह अ- लगाई हुई है।